अ वॉल क्लॉक है और यहां पे कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं।

और यहां पे अ हम्म अ फ्लावर दीवार पे लगे हुए हैं और यहां पे ब्लैक कलर की चिया है ।

एक औरत है उसने ऑरेंज कलर की साड़ी पेहनी हुई है और वो पानी में--

उसने लाल कलर और पीले कलर की साड़ी पहनी हुई है वो--

यह एक स्कूल है और यहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है बॉय कट स्कूल --

अ और यहां पे तारे लगे हुए हैं और यहां पे--

यह प्लेट पे लिची रखी हुई है और एक ट्रे है के पे प्लेट रखी है स्टील की।

रीची बाहर से पिंक कलर की हुए है और अंदर वाइट कलर की होती है।

अ वार्डरोब है और उस पे शी शीशे लगे हुए हैं और--

साइड में कुर्सियाँ और टेबल्स लगे हुए हैं वो ब्लैक कलर की है।

और अ उस उम एक प्लग लगा हुआ है और एक दो स्विच लगे--

और यहां पे यह किट-कैट है कैटबरी है और यहां पे बहुत सारे चॉकलेट्स हैं।

यहां पे एक और अ व वहां से एक दरवाजा है।

अं एक बाइक और गाड़ी हैं और यहां पे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

छोटा सा और यहां ब्लैक कलर की गाड़ी भी है।

और यहां पे शिमला मिर्च है प्याज है मूली है बीनस है और यहां पे अ--

ये यहां पे एक अलमारी है और यहां पे --

है और यहां पे ये सामने एल_सी_डी लगा हुआ है--

ये एक सड़क है और यहां पे कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं और पेड़ नजर आ रही है--

वेटिंग की जगह नजर आ रही है और यहां पे--

और एक आदमी चलता हुआ नजर आ रहा है--

और दूसरी भी ब्लैक कलर की ब बाइक है।

ग्रे कलर की पेंट पहनी हुई है और उसके बालों का रंग काला है--

और लाइटें लगी हुई है और यहां पे एक बोर्ड लगा हुआ --

लड़का उसके भी बालों का रंग काला है और उसने लाइट या--

ग्रीन की टी-शर्ट पहनी हुई है और पीछे दो कश्तियां हैं और पीछे पेड़ है और पहाड़ नजर आते हैं।

एक शॉप है और यह अ ज्वेलरी शॉप है यहां किस्म किस्म की नेकलेसेस है--

गोल्ड की है डायमंड की है और यहां ये शीशों पे--

और दो आदमी नजर आ रहे हैं उसने ब्लैक कलर --

और यहां पे बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है और एक आदमी खड़ा है उसने ऑरेंज कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पेंट पहनी है--

अ अपर पहने हुई है उसकी टोपी सर पर रखी है उसने उसके चेहरे पे थोड़ी दाढ़ी है।

और पीछे दुकान में भी कुछ मालाएं ऑरेंज कलर की लगी हुई है और एक आदमी खड़ा है--

यह एक टेबल है और यहां पे अ ट्राय है और ट्रे पे खाना है तीन ट्राय है तीनों पे खाना है --

वहां पे एक आदमी बैठा हुआ है उसके पास पॉलिथिन है पॉलिथिन में कुछ सब्जियां--

वाइट शीट पर है और दुकान है।

और एक बाइक दिख र स्कूटी दिख रही है और एक गाड़ी नजर आ रही है ।

डिब्बा एक है बड़ा वाला और यहां पे--

और यहां पे कुछ और भी चीज है हार्डवेयर की है और एक डिब्बा है दूसरी और बारी में--

ये एक शॉप है और यहां पे बहुत सारी चीजें हैं यहां पे--

डूंगे और यहां पे नॉनस्टिक पैन्स है।

ये एक कॉरिडोर है और यहां पे एक अलमारी है और कुछ कुर्सियां हैं।

हम्म बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कॉफी दिखाई गई है।

ये एक रेस्टोरेंट है और यहां पे कुर्सियां और टेबल है और एक अलमारी सामने है।

अ और गमलों में पौधे रखे हुए हैं और एक आदमी बैठा हुआ है।

इसने ब्लैक कलर की टी-शर्ट और ग्रे कलर की पैंट पहनी हुई है।

एक पार्क है और यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे है।

और जहां टोपी में भी कुछ ग पौधे निकल आए हैं और यहां पे--

बिस्किट्स हैं चॉकलेट्स हैं और यहां पे एक डीप फ्रीजर है।

और यहां से आटा के बैग्स है।

और यहां और यहां से और भी खाने की चीज है और यहां एक लाइट जल रही है।

कुछ सामने माइक पे सुना रहा है और उसके हाथ में पेपर है ।

और यहां सामने एक खाली कुर्सी है ।

ऊपर तेल है और यहां पे पार्ली-जी बिस्किट है और यहां पे फाइव स्टार है और भी खाने की चीजें हैं--

एक सड़क है और यहां पे एक पेड़ बीच में--

ब्लैक कलर और हम्म हम ब्लैक कलर की दोनों है--

और यहां पे सामने एल_सी_डी रखा हुआ है टेबल पे--

अ बोर्ड लगा हुआ है उसपे एक प्लग लगा हुआ है और एक कप है।

और यहां पे पैकेट्स में भी चॉकलेट्स रखे हुए हैं डेरी सिल्क अ डेरी मिल्क सिल्क है और यहां पे--

और यहां पे एक हम्म हम्म बच्चों के लिए--

ये एक आदमी है और ये सामने उसकी बहोत सारी किताबें है।

बंडल्स में और पीछे भी बहुत सारी किताबें हैं और पेन है.

साइकिल पे कुछ चीजें हैं जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं।

घने बादल नजर आ रहे हैं और एक दरिया--

और यहां पे अ स्विच लगे हुए हैं.

लाइट्स लगी हुई हैं और यहां पे कुछ पेपर्स रखे हुए हैं.

एक कंप्यूटर सेंटर है और यहां पे बहोत सारे कंप्यूटर्स हैं सामने बड़ा कंप्यूटर है।

ऊपर हो रही है इन्होंने लड़कियों ने मुक्तल--

बालों का रंग काला है और उसने गले में कुछ लगाया है ऊपर ए_सी है और फ्रेम है।